बहुत सारे पत्ते गिरे हुए हैं।

यह एक होटल का तस्वीर है यहां पे बहुत सारे व्यक्ति खात खाना खाते हुए दिख रहा है।

और दीवाल पे एल_सी_डी लगा हुआ है।

दुकान के सामने में एक बाइक खड़ा है।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

और बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है।

यहां पे बहुत सारे व्यक्ति आए हुए है और बहुत सारे बाइक खड़े है।

और सामने में एक पेड़ भी लगा हुआ है।

और बहुत ही अच्छा दुकान है बहुत सारे फल मिलते--

बहुत ही अच्छा दिख रहा है।

बहुत ही अच्छा दुकान है यहां पे बहुत सारे कपड़े मिलते हैं।

जैसे कि कंप्यूटर और लैपटॉप और जेरॉक्स मशीन और एल_सी_डी भी लगा हुआ है।

और हरा भरा दिख रहा है शेर के चारों ओर से घेर दिया गया है पिंजरे में बैठा हुआ है।

हरे भरे दिख रहें हैं।

मूर्ति का कलर सफेद है।

वॉल पे और टंकी दिख रहा है।

और बहुत सारे यहां पे बहुत सामान रखे हुए हैं और--

और यहां पे बहुत ही अच्छा दिख रहा है।

साइड में एक फूल रखा हुआ है।

सामने एक पेड़ है पेड़ का पत्ता हरा भरा दिख रहा है।

दुकान के सामने में एक बाइक खड़ा है।

बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और हरा भरा दिखा रहा है और--

बहुत सारी लाइट लगे हुए हैं।

चारो ओर से घेर दिया गया है और लाइट लगे हुए हैं।

बहुत सारे पोस्टर भी लगे हुए है पेड़ पे और यहां पे बहुत सारे व्यक्ति आए हुए है और चाय पी रहे है और--

बहुत ही अच्छा सजाया गया है।

पुतला खड़ा है लेडिस का कपड़ा पहना दिया गया है वह--